इस इमेज मे एक मंदिर का अच्छी तरीके से एक बना हुआ दिखाई दे रहा है बहुत बड़ा एक सामने एक छोटा सा गडेरी दिखाई दे रहा है उसमे ऐसा लग रहा है मूर्ति रखी हुई एक लड़की आते हुए दिखाई दे रहा हैं और बहोत ज्यादा सीढ़िया दिखाई दे--

दिखाई दे रही है उसके ऊपर केटली दिखाई दे रही है और उसके उपर कुछ कप कुछ सामान अलग -अलग तस्वीरें दिखाई दे रही है। एक साइड में रखी हुई दिखाई दे रही है।

खंभा दिखाई दे रहा है एक यहाँ एक अंग्रेजी और वहाँ पर दवाओ के विक्रेता के का पोस्टर लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

में दिखाई दे रहा हैं यहाँ पंखे लगे हुए लाइटिंग लगी हुई सी. ऍफ़. एल. लगे हुए दिखाई दे रहे हैं टाइल्स लगी हुई दिखाई दे रहे हैं चमचमाते हुए--

नीचे मे यहाँ एक अ बिल्डिंग बहोत बड़ी दिखाई दे रही हैयहाँ पोस्टर लगे हुए हैं दिखाई दे रहे --

ये जो यहाँ पे ये एक साइड कुछ पन्नी जेसे लगे गजरे लगे हुए लाइटिंग लगी हुई दिखाई दे रही है यहाँ टंगे हुए फूल फुलंग टंगे हुए दिखाई दे रहै--